इस कमरे में बहोत सारे कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर और उनके साथ-साथ कीबोर्ड और माउस भी हैं।

इस होकी की बिल्डिंग का कलर लाइट क्रीम है और सड़क आगे से बनाई गई है। सड़क के साथ-साथ हरे-भरे वरक्ष भी हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका काम अभी चालू है।

इस तस्वीर मे येलो कलर का मेरीगोल्ड फूल है। ये मेरीगोल्ड फूल --

इस तस्वीर मे एक जंगल है । जिस जंगल में बहोत सारे छोटे छोटे --